यह फुटेज एक आपीस का है जिसके अंदर--

यह काफी हरे और घने दिख रहे हैं इसमें--

खिड़कियां दिख रहा है इस खिड़कियां में कांच लगा हुआ है इसके नीचे में--

उसके ऊपर से कुछ तार भी गए हुए हैं इसमें देखने में काफी अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं।

मे पंखा घूम रहा है और भी यहां पे कुछ है जोकि--